इस फोटो में एक टावर दिख रहा है कुछ पेड़ पौधे हैं।

एक आ दो आदमी नीला कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

एक तसला है उसके ऊपर कंटेनर रखा हुआ है।

इस फोटो मे चार लोग है।

यह फोटो सुजुकी शोरूम का है इसमें दो आदमी दिख रहे हैं जो ब्लू कलर का शर्ट और पेंट पहने हुए हैं।